जिसके अंदर कई पंखे दिख रहे हैं कई बैलून दिख रहा है डमरू दिखाई दे रहा है।

लाइटें बढ़ रही है कई पर्दे दिख रहे हैं।

कई सारे बोतल दिखाई दे रहे हैं।

कई कुर्सिया दिखाई दे रहा है।

हरा और पीला दिखाई दे रहा है।

लड़के घूम रहे हैं।

हरे भरे पेड़ पौधे नजर आ रहे है।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

जो कि घर में शादियां हो रही है कई सारे लड़के और लड़कियां दिख रही है।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

रोड के किनारे कुछ तोकाने दिखाई दे रहे हैं।

आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का रंग नीला है।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

एक कर्नाटका बैंक दिखाई दे रहा है।

कई सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

एक लड़की बैठी हुई नजर आ रही है।

लाइटे बढ़ रही है घर का डिज़ाइन दिख रहा है।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

घर ब्लू कलर का है।

घर में लाइटें बढ़ रही है।

जो कि एक स्टार बना हुआ है स्टार के अंदर एक कार्टून बना हुआ है।

एक टाइम का पोस्टर लगा हुआ है।

एक ए_सी दिखाई दे रहा है कई सारे बैलून दिखाई दे रहे हैं घर में लाइट बढ़ रहा है.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

जो कि सड़क किनारे एक लोहा का घेरा हुआ है।

इस तस्वीर में एक ऑफिस दिख रहा है जिसके अंदर कई सारे आदमी बैठे हुए हैं पानी का बोतल दिख रहा है।

एक आदमी खड़ा दिख रहा है कैबिन है।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

एक लोहा का गेट दिख रहा है।

एक घर दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है।

जो कि रोड प न टूट दिख रहा है ।

ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है एक ए_सी दिखाई दे रहा है।

आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का रंग नीला है।

छोटा बच्चा दिख रहा है एक शूटर दिखाई दे रहा है।

हर एक कलर के कपड़े दिख रहे हैं।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

लोहा का कुछ सामान दिखाई दे रहा है।

दुकान दिखाई दे रहा है जो कि गाड़ियां दिख रही है लाइटें बड़ रहे हैं चित्र दिखाई दे रहा है।

आदमी दिखाई दे रहा है एक लोहा का गेट दिख रहा है।

एक आदमी गाड़ी लेकर खड़ा है।

इस तस्वीर में एक होटल दिखाई दे रहा है जो कि होटल के अंदर कई सारे कुर्सिया दिख रही है डेक्स दिखाई दे रहे हैं।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

एक कुर्सी दिखाई दे रहा है लाइट बढ़ रही है एक चित्र बना हुआ है।

इस तसवीर में एक सड़क दिखाई दे रहा है।

सड़क के किनारे एक लड़का खड़ा है जो कि फोन फोटो खींच रहा है।

एक गाड़ी दिख रही है एक स्कूटी दिखाई दे रहा है हरे भरे पेड़-पौधे दिख रहे हैं।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

सड़क के अलग-बगल झूले लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक घर दिखाई दे रहे है।

घर में जिम का सामान दिख रहा है।

एक ए_सी दिखाई दे रहा है।

कोई टेपुआ दिखाई दे रही है दो लड़के बैठे हुए दिख रहे हैं।

हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहा है।

कई बच्चे लोग खेल रहे हैं।

आसमान का रंग नीला दिखाई दे रहा है।

एक सीडी दिखाई दे रहा है।

पहाड़ पहाड़ पर बड़े पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का रंग नीला दिखाई दे रहा है।

सड़क किनारे एक दुकान दिखाई दे रहा है।

रंगबिरंगी बलून दिख रहा हैं।

कई लड़के दिख रहे हैं एक सीडी दिखाई दे रहा है एक लैपटॉप दिखाई दे रहा है।

मेडियम पिज़्जा का पोस्टर सटा हुआ है।

इस तस्वीर में एक हॉटेल दिखाई दे रहा है।

एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक पार्क दिखाई दे रहा है।

घर दिखाई दे रहा है लोहा का घर दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है।

गमला दिखाई दे रहा है।

आसमान दिखाई दे रहा है।

लोहे का गेट दिख रहा है।

कई मिट्टी का गिलास दिख रहा है।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

औरत और मर्दाना दिख रहा है।

खुशबू नाम का पोस्टर दिख रहा है।

कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है।